how to create a superlibrarian पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम patron category जोड़ना
patron बनाना
superlibrarian बनाना और
किसी विशेष module के लिए staff को access देने के बारे में सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ubuntu linux os 1604 और koha version 1605 का उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
आइए जानें कि patron category को कैसे जोड़ना है
database administrator username और password का उपयोग करके koha में लॉग इन करें
koha administration पर क्लिक करें
patrons and circulation में patron categories पर क्लिक करें
एक नया पेज patron categories खुलता है
new category पर क्लिक करें
एक नया पेज new category खुलता है जिससे हमें कुछ विवरण भरने के लिए प्रेरित किया जाता है
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है ध्यान दें कि लाल रंग में चिह्नित fields अनिवार्य हैं
मैंने यहां कुछ विवरण भर दिए हैं कृपया इसी तरह से करें
category type: के लिए ड्रॉपडाउन सूची से staff चुनें
branches limitation: के लिए all branches चुनें
फिर पेज के नीचे save पर क्लिक करें
category नाम जिसे हमने प्रविष्ट किया है patron categories पेज पर दिखाई देता है
मेरे इसमें यह library staff है
इसी के साथ patron category बन गया है
इसके बाद हम सीखेंगे कि patron कैसे जोड़ना है
ऊपरी बाएँ कोने पर home पर क्लिक करें
koha homepage एक डायल़ॉग बॉक्स के साथ खुलता है जो हमें create a patron के लिए प्रेरित करता है
patron बनाना अनिवार्य है अन्यथा database administrator भूमिका में koha की कुछ चीजें काम नहीं करेंगी
जैसा ही डायलॉगबॉक्स प्रॉम्प्ट होता है create patron पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से आप koha home page पर patrons पर क्लिक कर सकते हैं
मैं create patron पर क्लिक करुँगी
एक नया पेज खुलता है new patron टैब पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन से मैं library staff चुनूँगी
add patron library staff नामक नया पेज खुलता है
अब विभिन्न वर्गों के तहत आवश्यक विवरण भरें जैसे:
जैसा कि यहां दिखाया गया है मैंने कुछ विवरण भर दिए हैं
यदि आपके पास सूचीबद्ध किसी भी field के लिए जानकारी नहीं है तो बस इसे खाली छोड़ दें
वीडियो को रोकें और सभी विवरण भरें और उसके बाद वीडियो फिर से शुरू करें
library management: सेक्शन में field card number: देखें
ध्यान दें कि नंबर 1 koha द्वारा स्वचालित रूप से जनरेट किया गया है
इसलिए आपको अपने koha interface पर एक अलग नंबर दिखाई देंगे
अगला library है
ड्रॉपडाउन से मैं spoken tutorial library चुनूँगी
याद रखें: spoken tutorial library इस श्रृंखला में पहले बनाया गया था
यदि आपने अलग नाम दिया था तो उस नाम को यहां चुनें
category के लिए मैं ड्रॉपडाउन से library staff चुनूँगी
opac/staff login सेक्शन में username और password प्रविष्ट करें
प्रत्येक नए यूजर को एक नया username और password बनाना चाहिए
मैं यूजरनेम में bella प्रविष्ट करुँगी
पासवर्ड में library
फिर confirm password: फिल्ड में समान पासवर्ड प्रविष्ट करें
इस यूजरनेम और पासवर्ड को याद रखें
इसका उपयोग कुछ समय बाद staff को अधिकार / अनुमति देने के लिए किया जाएगा
सभी विवरण भरने के बाद पेज के शीर्ष पर जाएं और save पर क्लिक करें
patron और card number नामक नया पेज खुलता है
इस केस में जैसा कि पहले प्रविष्ट किया गया था पेज card number 1 के साथ ms bella tony के रूप में patron है
इस सेक्शन्स को एडिट करने के लिए edit टैब पर क्लिक करें जो संबंधित सेक्शन्स के नीचे स्थित है
अब हम सीखेंगे कि patrons को अनुमति कैसे देना है
उसी पेज में more टैब पर क्लिक करें और फिर set permissions पर क्लिक करें
set permissions for bella tony टाइटल के साथ नया पेज खुलता है
superlibrarian access to all librarian functions चैकबॉक्स पर क्लिक करें
फिर पेज के नीचे save पर क्लिक करें
अब superlibrarian ms bella tony को सभी library functions का एक्सेस मिल गया है
इस superlibrarian अकाउंट के साथ हम staff को अनुमति दे सकते हैं
अतः यह koha library management system में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है
अब सीखें कि किसी विशेष module के लिए staff को कैसे एक्सेस देना है
अपने वर्तमान database administrative user से लॉगआउट करें
ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएँ कोने पर जाएँ और no library set पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन से logout पर क्लिक करें
अब superlibrarian account से लॉगिन करें
superlibrarian किसी अन्य staff को module एक्सेस करने के लिए अधिकार या अनुमति दे सकते हैं
उदाहरण के लिए cataloging module circulation module
serial control acquisition आदि
पहले दर्शाए अनुसार patron बनाएँ
new patron टैब पर क्लिक करें ड्रॉपडाउन library staff से चुनें
salutation में ms चुनें surname में samruddhi प्रविष्ट करें
category के लिए ड्रॉपडाउन से library staff चुनें
कोई अन्य विकल्प न चुनें
opac/staff login सेक्शन में
username में samruddhi और password में patron प्रविष्ट करें
फिर confirm password फिल्ड में समान पासवर्ड प्रविष्ट करें
इस यूजरनेम और पासवर्ड को याद रखें इसका उपयोग staff लॉगिन करने के लिए किया जाएगा
सभी विवरण भरने के बाद पेज के शीर्ष में save पर क्लिक करें
अब इस विशेष patron को अनुमति दें
more टैब पर जाएँ और set permissions पर क्लिक करें
set permissions for samruddhi टाइटल के साथ नया पेज खुलता है
यह patron का नाम है जो हमने बनाया
circulate check out and check in items चैकबॉक्स पर क्लिक करें
फिर catalogue required for staff login चैकबॉक्स पर क्लिक करें
borrowers add modify and view patron information पर भी क्लिक करें
फिर यहाँ plus sign पर क्लिक करें
reserveforothers place and modify holds for patrons पर क्लिक करें
फिर edit catalog टैब पर आएँ
plus sign पर क्लिक करें और editcatalogue edit catalog modify bibliographic/holdings data पर क्लिक करें
फिर acquisition टैब पर आएँ plus sign पर क्लिक करें और acquisition acquisition and/or suggestion management पर क्लिक करें
फिर tools टैब के लिए यहाँ plus sign पर क्लिक करें
और batch_upload_patron_images upload patron images in a batch or one at a time पर क्लिक करें
फिर edit_patrons perform batch modification of patrons पर क्लिक करें
import_patrons import patron data भी चुनें
फिर edit authorities पर भी क्लिक करें
फिर reports allow access to the reports module टैब पर आएँ
plus sign पर क्लिक करें और execute _reports execute sql reports चुनें
फिर पेज के नीचे save पर क्लिक करें
इसके साथ हमने ms samruddhi नामक library staff को सभी आवश्यक अधिकार rights दिए हैं
अब superlibrarian account से लॉगआउट करें
ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएँ कोने पर जाएँ spoken tutorial library पर क्लिक करें ड्रॉपडाउन से logout पर क्लिक करें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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने
patron category जोड़ना
superlibrarian बनाना और किसी विशेष module के लिए staff को एक्सेस देना सीखा
नियतकार्य के रूप में research scholar नामक नया patron category जोड़ें
superlibrarian के लिए नियतकार्य निम्न भूमिकाओँ के लिए नया staff जोड़ें
सभी cataloging rights को निर्दिष्ट केरं
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है
spoken tutorial project team: कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया इस फोरम में टाइम के साथ अपने प्रश्न पूछें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद